एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर का फोटो है जोकी इसमें काम चल रहा है| ऐसा लग रहा है आज ही इसका छत ढलाई है पीछे बहुत सारी क्वांटिटी में बालू रखे हुए हैं।

एक आदमी यहाँ पे बेंच में बैठे हुए हैं जोकी अपना फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं जोकी वाइट शर्ट और ब्लैक पेंट स्लिपर में बैठे हुए हैं| एक बेंच के टेबल के उधर भी आदमी बैठे हुए हैं।

और बच्चे फोटो खीचा रहे हैं| एक ऊपर वाला बच्चा सेंडो गंजी और एक पेंट हाफ पेंट पहना हुआ है और नीचे वाला कला टी-शर्ट और हाफ पेंट पहना हुआ है और पीछे बड़े-बड़े गाछ भी दिख रहे हैं।

ये अंडर कंस्ट्रक्शन घर बन रहा है ऐसा लग रहा है आज घर का छत ढलाई है और इसमें काफी सारे वर्कर भी दिख रहे हैं।

यह एक लौंडरी लैब है जोकी बैनर में दिख रहा है| लौंडरी लेब और यहाँ पे बहुत सारे वॉश कपड़े होते हैं।